उसमे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं पैर भी पसारे एक बच्ची भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो बच्ची कुछ उस महिला से पूछ रही है वहाँ पर कई प्रकार की ररखी खुर्सिया भी बनी--

अलग-अलग क्वालिटी के बनाए गए हैं दुकान में मोबाइल भी डला हुआ दिखाई दे रहा उसके सामने एक दुकानदार कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा जो इन ग्लासों को--

इनका काम लगा हुआ जो मकान बन रहा हैं मिस्त्रि लोग उसका एक-तीन चार लोग मिस्त्री उसको मकान के कुछ फंटी गाटर बिछा रहे हैं और दो तीन महिला खड़ी--

और वहाँ वृक्ष भी दिखाई दे रहे है वृक्षों के पीछे से कुछ रस्ता भी दिखाई दे रही है पानी मे नाव डली हुई है तीन चार नाव दिख रही है लड़का बहुत फोटो खिंचवा रहा है एक्शन मे उसकी फोटो खिंचनी वाली है।